एक नदी की फोटो है जिसमें काफी लोग हैं जो नदी में नहा रहे हैं।

और ब्रिज के ऊपर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं जो नदी में देख रहे हैं।

फोटो है जिसमें फिश बेची जाती है मिलती हैं।

यह एक किसी वेटिंग एरिया का फोटो है जिसमें कुर्सियां वेटिंग --

ए_सी लगी हुई है ऊपर दो पंखे लगे हैं बीच में रॉड लगी ऊपर टीन पड़ी हुई है।

यह एक किसी ग्राउंड की फोटो है जिसमें छोटी छोटी घास उगी हुई है हरे कलर की।

यह किसी शॉप की फोटो है जिसमें बहुत सारे परफ्यूम रखे हुए हैं।

यह एक जैन फूड सब्जी वाला है जिसमें सारी सब्जियां मिलती है।

उनका फोन भी लगा हुआ है फोन नंबर भी लिखा हुआ एक राड लगा हुआ है।

यह एक कल्टीवेटर की फोटोज है बहोत सारे कल्टीवेटर रखे हुए हैं।

सत्यम हार्डवेयर एंव प्लाईवुड का बोर्ड अंदर भी लगा है बाहर भी बड़ा सा लगा हुआ है।

ये किसी शोरूम की फोटो है जिसमें शेरवानियों को अलग अलग डमी में लगाया गया है।

क्रीम कलर की है जिसपे सजावट सजाया गया है। कढ़ाई हुई है।